जहां पे रायपुर गंज भी लिखा हुआ है भारतीय डाक के--

बहोत सारे गाड़ियां भी दिख रहे हैं।

और खंभे भी दिख रहे हैं और पेड़ भी--

फैंसी स्टोर दिखाई दे रहें हैं।

और खिलौने भी दिख रहे हैं।

दिख रहे हैं घास भुज भी दिख रहे हैं।

पार्क वाली जगह दिख रहें हैं।

और बाहर में बहोत सारे हरे भरे पेड़ पौधे भी--

बहोत सारे लोग भी दिख रहे हैं।

यह एक बहोत बड़ी कार रिपेयरिंग शॉप दिख रहे हैं।